ये आप देख सकते है । यह एक हमे होटल नज़र आ रहा है । जहाँ पे उसके गेट के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से उस होटल को सजा दिया गया है । और यहाँ पे हमे देखने से यह प्रतीत हो रहा है । की यह होटल का आज ओपनिंग हुआ हैं । जो कि बाहर में बलून लगाये --

हैं और काफ़ी सारे रंग बिरंगे बल्ब भी हमें नज़र आ रहें हैं।

और स्कूल के सामने कई हमें टीचर्स भी खड़े नज़र आ रहे हैं और स्कूल के सामने में --

ऐ कई लोगो की भीड़ भी हमें नज़र आ रही है और अगल-बगल में कई बड़े-बड़े हमें बिल्डिंग भी दिखाई दे --